इस तस्वीर में एक रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल दिखाया गया है।

इस तस्वीर में रोशनी एल_इ_डी लाइट की जरिए आ रहा है।

ये तस्वीर एक रिसॉर्ट की है जहां पर बैठने के लिए छोटे छोटे घर भी बनाया गया है।

इस तस्वीर में मिठाइयों के साथ साथ नमकीन भी रखा गया है।

इस तस्वीर में कई सारे पूल पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में वाशिंग मशीन और फ्रिज भी मिलता है।

इस तस्वीर में दीवारों का रंग लाल है इस तस्वीर में सोने का मंदिर और सोने के रंग का गेट भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में रेड बुल का एक बड़ा सा गेन और गिटार भी रखा गया है।

इस तस्वीर में व्यक्ति ने एक काला टोपी और--

इस तस्वीर में चारों तरफ हरे भरे हरियाली है।

यह तस्वीर एक होटल के कमरे की है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति को भी दिखाया गया है।

इस तस्वीर में सारे डॉक्टर फाइल लेके टेबल पर बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में टेबल के ओ ऊपर कंप्यूटर मॉनिटर भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक बाहर के बीचो बीच की है।

इस तस्वीर में बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे है।

जहां पर एक व्यक्ति अपना बाल कटवा रहा है।

इस फोटो में पाउडर और बाल काटने की कुछ समाने भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक बड़े इमारत को बनते हुए दिखाया गया है।

इस तस्वीर पर एक ऑफिस को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में मौसम धुंधला धुंधला सा है।

इस तस्वीर पे एक बिजली का कंबा भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक कंस्ट्रक्शन साइट की है जहां पर एक नीले कपड़े वाला व्यक्ति सभी पर ध्यान रख रहा है।

इस तस्वीर में एक साइबर जेरॉक्स की दुकान को दिखाया गया है।

इस तस्वीर में इमारत का रंग सफेद है इस तस्वीर में इमारत के ऊपर एक पोस्ट इंडिया का लोगो लगा हुआ है।

एक व्यक्ति मोटरसाइकल चला रहा है।